जहां पर स्नेक बार करके एक शॉप दिखाई दे रही हैं।

और वहां पर बहुत सारे स्नैक्स के पुलके दिखाई दे रहे हैं।

फायर ब्रैकेट से फायर का वो अलार्म भी लगा हुआ है एक लेडी पर्स नीचे लगाए हुए हैं।

और बहुत सारे लोग एक दूसरे से बातचीत में लगे हुए हैं एक आदमी बाहर की तरफ जा रहा है।

ये कोई मॉल का एक स्पेसियस एरिया है जहां पर मेन लोगों के टी_शर्ट पड़े हुए हैं।

कपड़ा कपड़े का शोरूम दिख रहा है ऊपर की तरफ भी वी टू में कपड़े की शॉपिंग के बोर्ड लगे हुए वैल्यू एंड वैरायटी नजर आ रही है।

प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहे हैं चॉकलेट्स भी नजर आ रही है।

जिन्होंने अच्छा सा फैंसी कॉस्ट्यूम पहना है।

ब्लैक वाटर टैंक भी नजर आ रहा है।

जिनकी डिग्री बी_एम_एस है बहुत सी पब्लिक उनके ओपनिंग सेरेमनी पर खड़ी हुई है।

और कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं हर कोई अपनी एक्टिविटी में बिजी है छह पांच स्टूडेंट नजर आ रहे हैं।

सामने की तरफ भी पब्लिक नजर नहीं आ रही है।

क्योंकि यहां बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

और थोड़ा पानी का भी कुछ नजर आ रहा है।

तीन चार बच्चे बाहर की तरफ खेल रहे हैं।

और टेबल और बाहर की तरफ चप्पल भी पड़ी है।

तीन-चार पब्लिक आदमी खड़े हुए हैं गेहूं और चावल की बोरियां बाहर की तरफ रखी हुई है।

वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक आदमी जेब में हाथ डाले खड़ा हुआ है।

ये एक कार का शोरूम है तीन कार दिखाई दे रही है।

ऊपर की तरफ ब्रिज जैसा बना हुआ है जिसका कलर ऑरेंज है।

बहुत सारे सूखे-सूखे घास दिखाई दे रही है।

एक ट्रेन जा रही है एक ट्रेन आ रही है।

फैंस टाइप गार्डन एरिया बना हुआ है।

बहुत सी लड़कियां योगासन पर आसन कर रही है।

ये एक कोई भी मंदिर या टेंपल के बाहर का फोटो है।

जहां पर बहुत सी वेजिटेबल्स दिखाई दे रही है।

ये कोई होटल का नीचे का फ्लोर है।

जिसके बाहर एक आदमी मास पहने खड़ा हुआ है।

और यहां पर एक अंब्रेला भी नजर आ रही है।

एक रेड टी_शर्ट में आदमी एक्टिवा के पास में खड़ा है आई थिंक ये यमाहा का शोरूम है।

गार्डन एरिया है शाम का समय लग रहा है।

यह एक मंदिर का पिक्चर है।

प्लेटफार्म पर ट्रेन का वेट किया जा रहा है।

बहुत से आदमी और लेडीज बैठे हैं।